ने गाछी हय गाछी के हरिहर पत्ता हय सीढ़ी लागल हय।

कइले हई कोनो में गेट लागल हई गेट में पर्दा लागल हई।

कपड़ा पहिए हई पेंट हाफ पेंट पैनलें हई केस हई केस करिया कइलें हई। .

साड़ी पहलें हई केस बांधले हई गजला लगइलें हई --

आदमी सब यह ऑफिस यह ऑफिस में आदमी सब --

उ पंडाल हई एजा कपड़ा सब लागल हई।